जहां एक ट्रक खड़ा हुआ है।

एक पाइप भी पड़ा हुआ है।

और इस आदमी के बराबर में कुछ डंडा और पीछे पेड़ पौधे भी है।

और अलग अलग लाइटें भी लगी हुई है।

यह फोटो एक दर्जी के दुकान का है।

कुसी भी पड़ी हुई है।

इनमें से कुछ लोग खड़े हैं और कुछ लोग सोफ़ों के ऊपर बैठे हुए हैं।

इस फोटो में बहुत सारी लाइटें और डेकोरेशन हो रखा है।

जिसके बाहर कुछ लोग खड़े हुए हैं।

और कुछ जंगले भी हैं और यहां कुछ प्लास्टिक के पाइप भी हैं।

यह फोटो एक मंदिर का है।

जहां एक कमरा है और लोहे का बड़ा गेट भी है।

और इनके पीछे वाली दीवार पर कुछ बड़े बड़े पोस्टर भी लगे हुए हैं।

इनके पीछे एक ग्राउंड और है।

जिसके ऊपर जूते चप्पल और कुछ बॉक्स में कुछ सामान भी रखा हुआ है।

और इनके ऊपर कुछ गमले भी रखे हुए हैं।

इनमें से कुछ कार नीचे है और कुछ कार जैक से ऊपर उठा रखी है।

और इस फोटो में सफेद बड़े बड़े घर --

अ इस फोटो में एक टेबल है।

यह फोटो एक बुक की दुकान का है।

और बहोत सारी कुर्सियां भी पड़ी हुई हैं।